यह इवनिंग का टाइम है और यहां पर--

कुल का गेट दिख रहा है अंदर जाने के लिए गेट जो है जो की बहोत ही प्यारा गेट है और रेड कलर का पेंट किया गया है।

और ईटें के ऊपर बैठा हुआ है एक इंसान।

नर्सरी के पेड़ दिख रहे है कुछ फूलो के दिख रहे है कुछ नारियल के दिख रहे है।

यह एक बिशाल सा समुद्र हैं।

यह एक नाइ का दुकान है नाइ के दुकान में दो कुर्सी लगे है।

और जो की बात कर रहे है शायद इस शॉप में आए है पता नहीं कोन सा शॉप है पर कोई तो शॉप होगा।

और एक फेन भी है और स्टेज की जो फूलो से जो डेकोरेशन किया गया है बहुत ही जबरदस्त--

जो कि प्यारा-सा घर है जस्ट उनके पीछे कुछ पानी एक जगह इकट्ठे भी हुए --

यहा एक बिशाल सिटी है। जो की इस सिटी में बहुत सारे बिल्डिंग्स दिख रहे रहे है।